और बहुत सारे जमीन भी दिख रहे हैं।

और बहुत सारे गेट है और शटर्स लगे हुए हैं जिनका कलर ब्राउन है और एक सीढ़ी लगा हुआ है।

दृश्य बहुत सारे कार दिख रहे हैं जिनका कलर व्हाइट एवं ब्लैक है और बगल में बाउंड्री दिया हुआ है।

जिसमें शीशे लगे हुए हैं जिनका कलर व्हाइट एवं ब्लैक है।

और नीचे में रेड कलर का मैट बिछाया गया है।

दृश्य में एक सब्जी का मंडी दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सब्जी रखे हुए हैं।

और बेड पे एक प्लास दिख रहा है जिसका कलर नीला है।